सड़क दिखाई दे रही है। एक टायर खुला हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर हम लोगो को नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है। एक पेड़ लगा हुआ है जिसकी हरियाली दिखाई दे रही है। देखने में बोहत अच्छा पेड़ दिखाई दे रहा है।

अ बहुत सारे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है सागर भी --

उन लोगो को एक लड़का और दिखाई दे रहा है जो नीली पीली सी गुलाबो बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं शर्ट पहने हुए --

एक स्कार्पियो खड़ी है। वाइट कलर की स्विफ्ट खड़ी हुई है। पीछे के साइड बोहोत सारी गाडी खड़ी हुई हैं।

दिखाई दे रहा है जिसमे बाहर के साइड बोहोत सारी गाडी खड़ी हुई हैं। गाडी पर एक लड़का जा रहा है। अंदर एक लड़की दिखाई दे रही है। ह--